इस तस्वीर पर हमें रोड दिख रहा है जिस पर एक वाइट कलर का गाड़ी है।

आगे थोड़ी सी बाइक भी दिख रहे हैं और घर भी दिख रहे हैं।

सीलिंग पर तीन फैन दिख रहा है।

जहां तीन पिलो रखा हुआ है।

सामने बैंबू का पेरा भी दिख रहा है।

और दीवार का रंग पिंक कलर है।

यहां बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

हिरण का रंग ब्राउन है और हिरण उस तरफ देख रहा है।

कुछ पाँच जैसे लोग चल रहे हैं और नीचे नदी दिख रहा है नदी के सामने बहुत पत्थर है।

घर के उस पर हमें एक लाइट बल्ब भी रहा है।

यहां पर बहुत सारे बच्चे एक्सरसाइज कर रहे है।

एक इंसान अपना सेल्फी ले रहा है।

मैट्रिक्स के ऊपर वेलफील लिखा हुआ है।

यहां एक बड़ा सा फिश भी दिख रहा है।

ये एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम के_एच_वाई रेस्टोरेंट है।

से हमें साइड पर नदी भी दिख रहा है।

जिस पर एक इंसान भी दिख रहा है और यहां पर टेबल के आगे दो ग्रीन कलर के चेयर भी दिख रहे हैं।

और कुछ इंसान भी और रोड के उसे पार फ्रूट का दुकान भी देख रहा है।